मछवारा है मछवारे के पास बहुत सारी मछलियां है ।

ये है एक अंबेनीश मॉल है मॉल के चारों तरफ --

और प्लास काफी तरह तरह के समान है।

सड़क है सड़क पर दो बाइक खड़ी हुई हैं एक बाइक का कलर नीले रंग का है जिस पे हेलमेट लगा हुआ है --

और नर्सरी के बाहर का गेट--